और इसकी दीवार हरे रंग की है और काफी किताबें रखी गई हैं और एक आदमी खड़ा है शर्ट पहने वाइट रंग का और पैंट पहने।

उसके आगे छोटे-छोटे घास है जो कि हरे रंग की है नदी में कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं नहा रहे हैं।

हरी हरी झाडिया है कुछ सुखी हुई है।

और इसका टायर है वो काले रंग का है एक आदमी खड़ा है जो लाल रंग की टी-शर्ट और ब्लू रंग का हाफ पैंट पहने हुए हैं।

और यहां कई प्लास्टिक के खिलोने रखे गए हैं पीले--

हल्के नीले रंग और गाढ़े नीले रंग और सफेद रंग में है जो सफेद रंग है वो कापूस की तरह दिख रहा है।

रेड कलर के बाल हैं कांच का दरवाजा है।

यहां की दीवार है उस पे कलर निकल गया है बाकि दीवार क्रीम कलर की है रेड कलर का पेंट लगा हुआ है।

यह एक नदी का किनारा है बहुत बड़ी नदी है नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है।

घर की दीवार क्रीम कलर की है उसे सितारे से सजाया गया है दरवाजा है वो खुला हुआ है।

बगल की और सामने की दीवार ब्लू रंग की--

और उसके आगे दो छोटे-छोटे कार है सफेद रंग की।

और दूर कुछ लोग खड़े हैं और एकदम दूर हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

जो कि चॉकलेटी रंग के बेंच प बैठा है टोपी लगा के--

रखी गई है सफेद रंग का घर है।

हल्का ग्रीन दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

और बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं जो कि हरे रंग के हैं।

दोनों बेड पे तकिया रखे गए हैं और लकड़ी का बेड है।

पर्दा लगा हुआ है खिड़की है खिड़की का आधा कांच बंद है खिड़की के भी पर्दा लगा हुआ है।

ये कमरा है कमरे में एक बेड रखा गया है जिस पे प्रिंटेड चादर बिछाई गई है।

वहां जाली लगी है जो हरे रंग की है।

पानी के अगल-बगल झाड़ है जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं और बड़े-बड़े पेड़ हैं जिनकी पत्तियां हरी-हरी हैं।

और पटरी है पटरी बहुत दूर तक है लोहे की पटरी है।

आयरन की है और जो पत्ती से डेकोरेशन की गई है।

साड़ी है ड्रेस है शर्ट है पेंट है।